अम्मा दिखाई दे रहा है छत दिखाई दे रहा है काई दिखाई दे रहा है।

ब्लैक एंड वाइट आसमान दिखाई दे रहा है आसमानी कलर दिखाई दे रहा है लाल कलर दिखाई दे रहा है वाइट कलर दिखाई दे रहा है।

ब्लैक एंड वाइट मकान दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है बादल दिखाई --

अम्मा दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहे हैं रोड दिखाई दे रहा है पीला कलर दिखाई दे रहा है गुलाबी कलर दिखाई दे रहा है ब्लैक एंड वाइट कलर दिखाई दे रहा है सफ़ेद कलर --

लाइट दिख रही है गेट तो दिख रहा है पंपलेट दिख रहा है कांच का घेत गेट दिख रहा है गमला दिख रहा है हरा पौधा दिख रहा है पत्ता दिख रहा है पाइप दिख रहा है कुत्ता दिख रहा है।

मिट्टी दिख रही है हरी दूर्वा दिख रही है रेलिंग दिख रही है चिड़िया जो दिख रही है लेडिस दिख रही है घड़ी दिख रही है।

ताला दिख रहा है सांकड़ दिख रही है चैनल गेट दिख रहा है सटर दिख रही है पीले कलर की दीवाल दिख रही है।

झंडा दिख रहा है पेड़-पौधे दिख रहा है डोरी दिख रही है आसमान दिख रहा है तीन कलर में ब्लैक एंड वाइट जमुनी सलेटी गहरा सलेटी हरी दुबा दिख रही है।

एक लड़का देख रहा है दिख रहे हैं काला कुर्ता दिख रहा है जमीन दिख रही है चप्पल दिख रही है।

ब्लैक एंड वाइट कलर दिख रहा है स्लेटी कलर --

कैमरा दिख रहा है ए.सी. दिख रही है पर्दा दिख रहा है पर्दे टांगने का दिख रहा है कुर्सी दिख रही है कमरा दिख रहा है।

रोड दिख रहा है रोड में एक खम्बा दिख रहा है गाड़ी दिख रही है एक लड़का दिख रहा है एक लड़का दिख रहा है एक कुर्सी दिख रही है।

एक पीली बोरी दिख रही है कांच का गेट दिख रहा है कांच की खिड़की देख रही है हरी पौधे दिख रहे हैं तीन दिख रहा है खम्बा दिख --

सदर अस्पताल गोपालगंज दिखाई दे रहा है ईटें दिखाई दे रही है डोरी दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है।

मकान दिखाई दे रहा है मकान की खिड़कियां दिखाई दे रही है दुकान दिखाई दे रही है परदा दिखाई दे रहा है।